इस तस्वीर मे मुझे सजावट दिखाई दे रही है।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

इस तस्वीर में मुझे कुछ पिंजरे दिखाई दे रहे हैं।

तीर में मुझे एक रोड दिखाई दे रही है।

यहां मुझे एक पुरुष दिखाई दे रहा--